यहां बहोत बड़ा टेबल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लैपटॉप दिखाई दे रहा है बहोत सारे कुर्सीयां नजर आ रही है और यहां पंखा नजर आ रहा है।